और यह लोग मिरर मैं देख के डांस कर रहे हैं यह भरतनाट्यम डांस है।

ये एक कोचिंग क्लास हैं जिसमें सारे लड़के-लड़की पढ़ रहें हैं सर भी पढ़ा रहें हैं उन सब के मुँह पे मास्क लगा हुआ है सब कॉपीस में लिख रहें हैं सर ने बोर्ड पे कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है।

अ ये हरा-भरा पेड़ दिख रहा है और और पानी बहोत गंदा पड़ा हुआ है।

साफ आसमान दिख रहा है ये पेड़ ये पुल पुरा साफ - सुथरा पड़ा हुआ है दूर से एक गाड़ी आ रही है।